इस बॉउंड्री वॉल पे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे जो लंबे दिखाई दे रहे हैं यह नजारा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है सफेद बादल बहुत खूबसूरत सफ़ेद कलर के दिख रहे हैं।

ये बाजार का क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसमें हमें रोड दिख रहा है जो काले रंग का दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग रोड पे चल रहें हैं कुछ बाइक पे कुछ कचरे की गाड़ी जा रही है यहाँ पे पिले काले रंग का डिवाइडर भी दिख रहा है कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहें हैं।

सामने लाल रंग की बिल्डिंग दिख रही है उसके पास सामने बोर्ड दिखरा है जो सफ़ेद लाल रंग का दिखाई दे रहा है कुछ तार भी जाते हुवे दिखाई दे रहे हैं।

इस में प्राकृतिक नजारा दिखाई दे रहा है जो बहुत खुबसूरत लग रहा है| इस चित्र में पहाड़ नजर आ रहे में जो पहाड़ काले रंग के दिख रहे में।

चित्र में हमें एक झरना दिखाई दे रहा है झरने में कुछ पानी बहते हुए आ रहा है पानी का रंग सफेद दिख रहा है।

सामने कुछ दुकान टाइप के लग रहा है जिसमें लाल रंग के लाल रंग के पोस्टर से पुती है उसकी जमीने नीले रंग की दिखाई दे रही है बच्चों ने पीले और हल्के गुलाबी--

रहा है और बच्ची देख रही है सामने सफेद कलर की दीवाल नजर आ रही है पीले कलर का स्टूल भी दिख रहा है।

यहां पर कुछ इंजीनियर जो खड़े हुए हैं सफेद रंग के टोपी में जो इंजिनीयर ख़ड़े हैं वो कुछ पीले और लाल रंग के जैकेट पहने मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं जो की सफेद घर लोहा सामने दिखाई दे रहे हैं ।

सामने पेड़ का नजारा बड़ा खूबसूरत दिख रहा है सामने बादल बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है यह दर्शन बड़ा--

प्लेट का रंग काला दिखा रहा है और यह पे चम्मच स्टील के दिख रहे हैं लाइट चमकते बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है ।